ये तो बहुत सुन्दर है बहुत सस्ता भी है सबके बस्की बात है करना काम।

ये रेजिस्ट्रैशन एरिया है। यहाँ लोग रहते हैं। अच्छे-अच्छे मकान है।

ये कोई वैज्ञानिक का जगह है लग रहा और बहुत अच्छा है ये यहाँ कुछ ऊ-आविष्कार होता है।

पहाड़ी शेर पानी गिरता है अच्छा है सुंदर जगा है रोमांटिक जगा है ये।

उम्म ये जगह बहुत अच्छा है उम प्रदशनी का जगह है।

ये बहुत सूंदर दुकान है गिफ्ट हाउस है ये यहाँ बहुत बड़ा दुकान है तरह-तरह के गिफ्ट यहाँ मिलते है ।